जोकि बहोत जरूरी है हमारे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए हमें अपने आस-पास --

इस पिक्चर में राखी बेची जा रही हैं। रक्षाबंधन भाई-बहनो का पर्व होता है।

योग करना शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यह हमारे शरीर को तंदरुस्त रखता है।

यह एक मंडप का द्रश्य है जो पीले कलर से सजावट किया गया है। मंडप के ऊपर --

एक बहोत बड़ा झालर लगाया गया है जो बहोत चमकीला दिखाई दे रहा है।